यहां पर एक बड़ी सी दुकान है जिसमे बहुत सारे बॉक्स रखे हुये है यहां पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए है और पेपर्स रखे हुये है जो कि कॉपी और बुक्स भी रखी हुई है।

यहाँ पर और लाइट जल रही है एक बड़ा सा हॉल है जिसके बहुत सारे बुक्स रखी हुई है और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है बुक्स और पेन पेसिल ।

यहाँ पर एक बड़ा सा झूला है जिसमें बहोत सारी डलियां हैं और यहाँ पर बहोत सारे लोहे के भी लगे हुए हैं एक व्यक्ति खड़े हुए हैं कुछ व्यक्ति झूला झूल रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है पहाड़ और यहाँ पर एक छोटा सा नीचे गुफा है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसकी बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही हैं।